और दुकान की जालियों के अंदर --

कांच का कैबिन बना हुआ है।

और बगल में एक गमला रखा हुआ है जिसमे --

दुकाने लगी हुई है उ --

और ऊपर मे आसमान दिखाई दे रहा है।

और मेले में बहोत सारे लोग घूम रहे है।

और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति बनी हुई है।

बारिश के वजह से बाढ़ आई है ऐसा लग रहा है।

यहाँ पे बहोत बड़ा मंदिर बना हुआ है।